नाव खड़ी है बहुत सारे लोग बैठे हैं ऊपर पंछी उड़ रही है एक आदमी सेल्फी ले रहा है बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ औरतें बैठी हुई महिलाएं बैठी है और काफी गहरा पानी है|

पेड़ है हरी पत्तियां है सफेद नीला आसमान है|